मुझे इस फोटो में दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक बाइक दिखाई दे रही है।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

मुझे इस तस्वीर में कुछ गाड़ी के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बाइक दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस तस्वीर में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक टेबल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है।